बगल में एक तराकट से छायी हुई कुछ है जिसके किनारे किनारे वई येलो कलर की पो--

ढेर सारे घर वर भी बनाये गए है पीछे में बड़े बड़े पेड पौधे भी दिख रहा है इसके बगल में कुछ बनाया गया है जो की कराकट से छाया गया है।

यहाँ पर हम देख रहे है की सामने में एक बड़ी सी घडी जैसे बनाई गयी है उसके लेकिन ऊपर से ब्लू कलर का कराकट सा छाया गया है।

यहाँ सामने में एक बड़ी सी बिल्डिंग टाइप की दिख रही है जोकि पुराणी अ म--

ऑटो वाटो भी दिख रहा और घर बरभी दिख रहा है।

जो की येलो कलर की है उसमे दो लोग बैठे हुए एक लेडीज एक जेंट्स और सामने में एक जंगल जैसा दिख रहा है जिसमे ढेर सरे पेड पौधे झाडिया वाडिया--

बर्तन वर्तन भी रखा हुआ है यहाँ पे सब्जी मिल रहा है पीछे में घर है जो की बड़ा सा वाइट कलर का है और--

ब्लू कलर की बैलून लगायी गयी है और यहाँ पे कुछ अ अ हैप्पी बर्थडे भी लिख के लगाया गया है और अंदर में--

यहाँ पर हम देख रहे है की यहाँ पे बीच में कुछ लोहे की पोल जैसे गाडी गयी है और इसमें ढेर सारे --

यहाँ पर कुछ चीज की फसल उगाई गयी है जो की बहुत ही ताज़ी ताजी दिख रही है पुरे हरे भरे दिख रहे।

कुछ येलो पत्ता भी है कुछ ग्रीन भी है इसमें कुछ कुछ मैरून पत्ते भी दिख रहे है और जो की पुरे हरे भरे दिख रहे है पुरे ताजे ताजे है।

पर्दा लगायी गयी है सामने में एक बड़ा सा एल ई डी टी वी लगाया गया है यहाँ पे बेड है जिसपे बेडशीट वाइट कलर की बिछाई गयी है।

सामने में एक नदी दिख रही है जिसमे ढेर सारा पानी भरा हुआ है और बीच में डंटा गाड़ा गया है।

यह मंदिर काफी बड़ा है दिखने में बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पे सड़क है सड़क में ढेर सारी गाड़ी लगाई गयी है किनारे किनारे ढेर सारे पेड भी है।

रेड कलर की बोर्ड लगायी गयी जिसपे ऊप डाग घर लिखा गया है और नीचे में--

अलमीरा जैसा बनाया गया है जिसपे ढेर सारे कार्टून डब्बे डिब्बी रखे गए है और यहाँ पे लोहे की जाली भी लगायी गयी है और --

और यहाँ पे बीच में फूल वूल भी पेड पौधे भी लगाए गए है।

वाइट कलर का लग रहा है इसके बगल में ढेर सारे फ़ोन वोन क--

यहाँ पर पत्थर की कुछ पहाड़ टाइप की लग रही है।

और पत्थर पे हाथ रखा हुआ है और इधर पत्थर के किनारे से थोड़ी सी इसमें लाइटे आ रही है और इसमें छोटे छोटे पत्थर बड़े बड़े चट्टान भी सारे र--

बहुत ही अच्छी लग रही उसमे जो गेट है वो स्टील का लगाया गया है काफी बड़ी है और इसके--

और इसमें एक दरवाज़ा खिड़की भी लगाया गया है बाहर में कुछ खटिया टाइप का भी रखा गया है यहाँ पे कुछ पत्थर--

यहाँ पर एक बड़ी सी हॉल जैसे दिख रही है जिसमे ढेर सारे ब्लैक ब्लैक कलर के चेयर लगाए गए है।